और सब यात्री वहां पे बैठे हुए हैं कुछ खड़े हैं --

इस पहाड़ी बहोत ही ऊंचा है उसके बाहर नीचे मैदान है और उसके पहाड़ी के नीचे कुछ गुफाएं दिखाई दे रही है जिसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं।

जैसा कि हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं एक घर है रेस्टोरेंट है।

और दुकान में कोई दिखाई नहीं दे रहा एक फ्रिजर देखो और उसके अंदर बहुत सारे दवा रखे गए --

जैसा कि हम लोग यहां पे देख पा रहे--

जैसा कि हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं दो तीन मकान हैं।